आगे सामने कांच लगा हुआ है और उसके आगे छोटे छोटे बड़े पेड़ हैं गार्डन बना हुआ है और आगे दो लाल--

जो पेंट लाल कलर का हुआ हुआ है आगे का रेलिंग काले हैं और उसके सामने प्लास्टिक का पाइप लगल है।

छोटे से बिस्तर लगा हुआ है और गनेश जी का आगे थाली लगा हुआ है और बड़ा वाला पाटा लगा हुआ है जिसके अंदर घंटी वगैरा --

पर्पल कलर का बिल्डिंग है जो उसमें दो खिड़की है और नीले वाले आने के घर में चार खिड़की है।

इसके अंदर कोई आदमी नहीं है जो लोहे का कसरत करने वाला बना हुआ है।

आगे पीछे घास ही घास हैं पौधे लगे हुए हैं बहोत सारे पौधे लगे हुए हैं बहोत सुंदर दिख रहे --

यहां पे सफेद कलर का कॉलेज है और उसके आगे --

यहां ये पांच कार है जो काले कलर का है।

के आगे एक मछली वाला जिसमें मछली वछली पालते हैं वो है और --

या उसके आगे नदी के पीछे--

और उसके जस्ट पास में रोड है।